भी लगे हुए हैं और इसके ग्राउंड के बीच एक पानी वाला झरना है जिसके ऊपर से--

वो टीचर भी वहां पर खड़े होकर देख रहे हैं।

बहोत बड़े बड़े पेड़ दिखाई दे रहे हैं और पेड़ के पास बहोत सारे बाइक और स्कूटरी खड़ी है।

बैठा हुआ है जिसने नीली कलर की जैकेट डाली हुई है।

के नाम से एक बोर्ड लगा हुआ है और उस बोर्ड के पास कोका कोला का भी बोर्ड लगा हुआ है।